योगा हमेशा टाइट कपडों पर नहीं बल्कि लूस कपडों पर करनी चाहिए बाकि योगा करने मे हमें--

यह योगासन है सभी व्यक्ति अपने अपने स्थान पर योग कर रहे हैं योगा करने से हमारा शरीर--

मिलते हैं अलग अलग प्रकार के फूल पौधे डेकोरेशन जैसे पौधे जो घर पर लगाने से बहोत सुंदर दिखते--

यह एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है एल_जी का--

ग्रीन ये सब अलग अलग कलर उपर है। इसके पीछे का प्लेस बहोत--